तीन मुर्गियों का मंजर दिखाया गया है जोकि किसी आंगन में खड़े हुए हैं।

तस्वीर में हमें चाय का बागान का मंजर दिखाई दिया है जो की काफी ज्यादा हरे-भरे लग रहे हैं।

और ये किसी पहाड़ी इलाके का नजारा हैं और जहाँ हम देख सकते हैं इसके बाइयने तरफ भी काफी ज्यादा घर भी हैं बना हुआ है लोगो को रहे ने के लिए।

इस तस्वीर में हमे किसी बस अड्डे का मंजर दिखाया गया है जहां हम देख सकते है की दोपहर का वक्त है और बहुत सारी गाड़िया अपने-अपने कतार में लगी हुई है और बोहत सारे लोग है।

तस्वीर में हमे किसी पोस्टर का मंजर दिखाई गया है जहाँ पर हम देख सकते है कि ये एक घर है उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में है --

तस्वीर में हमें किसी पार्क का मंज़र दिखाया गया है जहाँ हम देख सकते हैं की काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जगह-जगह पर।

इस तस्वीर में हमें किसी अस्पताल का मंजर दिखाया गिया है और उस अस्पताल का नाम लिखा हुआ है वेदान्ता हॉस्पिटल ।

और काफी सारे बलून लगे हुए हैं और बहुत सारे केक भी है जो की तैयार है खाने के लिए ।